पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है जिसके चोच का रंग लाल है।

सड़क के किनारे कई गाय खड़ी हैँ और सड़क पर पेड़ भी लगे हुए हैं।

ढाबा है जहां कई कुर्सियां लगी हुई हैं ढाबे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

जैसा कि मैं यह देख पा रही हूं कि यह एक --

सड़क के किनारे कई गाड़ियां खड़ी है जिनका रंग अलग-अलग है।